दीवारें हैं जो सफेद कलर के ऊपर काफी लाइटें लगी हुई है।

तस्वीर में और दो सोफे और एक गद्दा भी रखा हुआ है।

एक में दिल लाल कलर के और ऊपर की डंडियों में दिल लगाए गए हैं।

यहां पे पेट्रोल पंप भराया जाता है पेट्रोल पंप का एरिया नीले कलर का और सफेद कलर का है।

रोड के इधर और उस पार सूखे हुए जमीन काफी दिख रहे है और ब अ पहाड़ काफी ऊंचा है।

चारों तरफ सी_सी_टी_वी और लाइटें लगी हुई है और दीवालों से घिरा हुआ है।

सामने बहोत ही बड़ा पहाड़ और घाटी नजर आ रहा है जो की हरा भरा दिख रहा है।

ऊपर पीले कलर के टेंट से और गुलाबी कलर लाल कलर पीले कलर के फूल से सजाया गया है।

यहां पर आई_पी_एल जैसे लीग और भी काफी मैचेस के ट्रॉफी रखे हुए हैं।

नीचे पौधे भी लगे छोटे छोटे और इस ढाबे के नीचे के एरिया सफेद है और बाउंड्री भी घिरी है सफेद कलर की।

यह मिट्टी के कलर का है और मोर का पंख बड़ा हुआ बड़ा है जो सीधे अंदर जा रहा है।

इस तस्वीर में स्कूल का दृश्य है जहां पर मेज रखें हुए जिस पर स्टूडेंट बैठकर पढ़ाई करते हैं।

पीछे हरे भरे पेड़ पौधे और सनलाइट भी दिख रही और बादर भी है और काफी कम्बे भी दिख रहे हैं।